नमस्कार सेल डिज़ाइनर के इस overview spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे सेल डिज़ाइनर श्रृंखला के बारे में तथा इस श्रृंखला के विभिन्न tutorials में उपलब्ध कंटेंट विषय वस्तु के बारे में
इस श्रृंखला में मैंने version 43 का प्रयोग किया है
यह इस tutorial शृंखला के बनाए जाने तक उपलब्ध नवीनतम version है
इन tutorials का अभ्यास करने के लिए मैं version 43 या इससे अधिक का प्रयोग करने की सलाह देती हूँ
यदि आप सेल डिज़ाइनर को पहली बार प्रयोग कर रहे है तो startup guide version 43 देखें
इसमें tool bar प्रयोग करने के क्रमशः निर्देश हैं
इस guide को प्राप्त करने का link यहाँ दिया गया है
अब हम एकएक करके इस श्रृंखला के tutorials के बारे में जानेंगे
इस श्रृंखला में पहला tutorial हैwindows machine पर इंस्टालेशन ऑफ़ सेल डिज़ाइनर
यहाँ tutorial की एक झलक है
अगला tutorial हमारी सहायता करेगाmenu एवं टूल बार्स को समझने में
सेल डिज़ाइनर के क्षेत्रों एवं सेल डिज़ाइनर के components को समझने में
यह tutorial windows os पर recorded किया गया है
हालाँकि इसके अंतर्गत समझाए गए सभी फीचर समान तरीक़े से लिनक्स os पर भी os करेंगे
लिनक्स उपयोगकर्ताओं को यह tutorial नहीं छोड़ना चाहिए
इस tutorial पर एक नज़र डालते हैं
अगला ट्यूटोरियल है लिनक्स पर इंस्टालेशन ऑफ़ सेल डिज़ाइनर
यहाँ tutorial की एक झलक है
अगला tutorial है create and edit components
यह हमारी मदद करेगाएक पहले से सेव की गई xml फाइल को खोलने के बारे में
कम्पार्टमेंट का आकार रंग एवं border की मोटाई को परिवर्तित करने के बारे में
सेल डिज़ाइनर में multiple files बनाने के बारे में
species के start पॉइंट और इंड पॉइंट को सीखने के बारे में
species एवं रिएक्शन की पहचान को बदलने में
इस tutorial को चलाते हैं
अगले tutorial में हम सीखेंगे
सभी कम्पोनेंट्स को ड्रा एरिया के दूसरी तरफ ले जाना
सेल डिजाइनर का प्रयोग करके reaction लाइन अलाइन करना reaction लाइन का विस्तार करना और process diagram बनाना
हम इस tutorial को देखते है
अगले tutorial customizing diagram layout में हम सीखेंगेreaction line का रंग आकार एवं चौड़ाई बदलना
reaction लाइन में anchor points जोड़ना तथा components को अलाइन करना
reaction ids को दिखाना/छिपाना
protein को edit करना
यहाँ tutorial की एक झलक है
इसे सारांशित करते हैं:
इस tutorial में हमने सीखा
दिए गए सभी विषयों पर विस्तृत ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया
दिए गए link पर जाकर video देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है तथा ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान करती है अधिक जानकारी के लिए कृपया contact @spokentutorial org पर संपर्क करें
spoken tutorial project talk to a teacher project का एक भाग है यह nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी निम्नलिखित link पर उपलब्ध है
यह ट्यूटोरियल अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद